ओर जो है दो लोग है उस पर से घेराव कर रहे है चारो और से ओर बहुत ही अच्छा